बीच में न ऐसा लग रहा है गाँधी जी का फोटो पर यह का चीज़ का है समझ नहीं आ रहा हैं।

बहुत प्यारा भी लग रही है इंडियन रेलवे का गाड़ी बहुत प्यारा और दिखने में भी अच्छा लगा रहा है साफ -सुथरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है रेलवे स्टेशन --

यहाँ कभी जाओ घूमने फिरने खाने-पिने तो अच्छा लगेगा और--

ये तो यार कोई गार्डन का हंड्रेड परसेंट साइड में वो है कचड़ा फेकने का यहाँ बैठना का है ।

एक हैरिटेज ब्लूस ये वाला कोई ना होटल है बहोत बड़ा सा होटल है।

बहुत अच्छा भी दिख रहा है लाइटिंग व्हाइटिंग भी लगा है।

और ये है स्कूल स्कूल में छोटे बच्चो का कुछ रंगोली ओंगोली बनाने का कॉम्पिटिशन हो रहा है।

अच्छा दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा कौन सी जगह है क्या है करके पर जाना पड़ेगा यहाँ कभी घूमने--